यह एक नदी है जहां पे बोहोत सारे लग रहे है बोहोत प्यारा नाजारा है जिसमे मे भी झाड़ दिखाई दे रेहे है। साईड मे भी बोहोत सारे घास उगे हुए है।

आसपास बहुत सारे झा-हा-ड़ हैं एक पत्थर में भी झड़ उगा हुआ है पानी का बहोत प्यारा नजारा--

यह एक सैनिक स्कूल है जहां के गेट ब्लैक कलर के है यहां पर एक आदमी नजर आ रहा है। एक वाइट कलर की कार यहां पर खड़ी हुई है।

यहा दो बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग्स है जो की ब्लू कलर और व्हाईट कलर की है और दूसरे साईड में एक ग्रीन और व्हाइट कलर के बिल्डिंग है।